गद्दे भी दिख रहे हैं बड़े बड़े कार्टूंस भी दिख रहे हैं।

ढाबे पे लिखा हुआ है कृषि का ढाबा--

और एक पे ऑरेंज कलर मिलाया गया हुआ--

ब्रिज के ऊपर से कुछ अपनी इधर के साइड --

एक चेयर पे एक आदमी बैठा है।

सामने सोफे पे दो लड़के बैठे हुए हैं।

बाहर रेड चेयर्स रखी हुई हैं।

जो पियानो बजा रहा है उसने व्हाइट कलर का मास्क मुंह पे लगाया हुआ--

स्टेज को पिंक कलर के झालर से--

वही एक आदमी वहां से मोबाइल लेके आता हुआ दिखाई दे रहा है।

पीछे लिखा है लक्ष्य इंटरनेशनल एकैडमी ।

आगे दो लड़कियां नाच रही हैं।

ये एक फैक्ट्री दिखाई दे र--

साइड में मटके दो बड़े लगे हुए हैं।

झरना ये नीचे तालाब में मिक्स हो रा--

पानी का पम्प दिखाई दे रहा है टाइस भी रखी हुई है।

दो भगवानों की मूर्तियां रखी हुई है।

वहीं पे साइड में दो मंदिर बनाए गए हैं।

वही एक गोल्डन सिल्वर घूमर भी लगा हुआ है।

वही पे एक आदमी चेयर पे बैठा हुआ है।

महाविद्यालय के सामने बहुत बड़ा गार्डन दिखाई दे रहा है।

ट्रैकिंग का सिस्टम बनाया गया है बड़े बड़े बांबूओं को कलर किया गया है और रस्सियों से बांधा गया--

रेक पे दो आदमी एक पर्पल कलर की शर्ट पेहना है एक ब्लू कलर की शर्ट पेना --

ईटों के इधर दो मजदूर बैठे हुएं हैं।